ये हाथों से अपनी झोपड़ी पकड़े हुए है।

ये आदमी कुछ सामान ले रहे हैं।

ऊपर भी दो माले पड़े हुए हैं जिनके फूल गुलाबी और सफेद रंग के बने हुए हैं।

पीछे की तरफ दो बड़ी बड़ी मरकरी जल रही है।

साइड में पेन और बहोत सारी स्कूली चीजों से रिलेटेड सामान रखा हुआ है।

जहां पर एक सड़क बनी हुई है।

ऊपर टीन सेट पड़ा हुआ है।

यहां पर से एक मेट्रो गुजर रही है।

यह एक होटल के रूम का चित्र है।

पीछे की तरफ लाल टमाटर रखी हुए हैं।

के_डी सिंह बाबू स्टेडियम लाल रंग से लिखा हुआ है।

जिस पे लिखा हुआ है अपोलो टायर्स ।

कुछ आदमी यहां पर जिम करने के लिए आए गए हैं।